इस फोटो में मुझे बहुत सारे एल्बम दिखाइए दे रहे हैं चारों ओर एल्बम को बनाया जा रहा है यहां पर बहुत से--

बैठे हुए हैं अलग-अलग डिजाइन के कपड़े रखे हुए हैं।

इस फोटो में मुझे बहुत सारा सामान दिखाई दे रहा है साथ में यहां पर बहुत से लोग खड़े हुए है।

यहां पर ऐसे खिड़की के बाहर बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं छोटे छोटे गमले रखे हुए हैं।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

सजाया गया है चारों ओर लाइट लगाई गई हैं यहां पर बहोत से लोग खड़े हुए हैं।

एक हॉस्टल बना होता है हॉस्टल के ऊपर बहोत सारी--

कप रखे हुए हैं और यहां पर बहोत सारे बोटले रखी हुई है तीस हजार कुर्सियां रखी हुई हैं एक छाता लगा हुआ एक कुर्सी में और यहां कुछ लोग खड़े हुए हैं।

चारों ओर बल्ब लगे हुए हैं यहां पर बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

बहोत से लोग खड़े हुए हैं यहां पास बहोत सी दुकानें बनी हुई हैं।

दुकानों के पास में बड़े बड़े खड़े हुए है।